यहा पर ये जो नजारा दिखाई देरा है यह किसी हाई कोर्ट का नजारा दिखाई देरा है जहा पर बड़ा सा दीवार है दीवार--

जो अपने बाल और दाढ़ी बनवा रहा है और सामने नाई खड़ा हुआ है जिसने लाल कलर की शर्ट पहनी हुई है प्रिंटेड और जीन्स पहना हुआ है ।

आ नो एक दूसरे से कुछ बाते कर रहे है और सामने आयना लगा हुआ है।

कुछ लोग कम कर रहे हे और एक आदमी काउंटर के सामने खडा सफ़ेद कलर की सट और नील कलर की पेंट पहने हुए हे ।

यहाँ पर लम्बी सी सड़क गयी हुई है आगे सड़क के इस पार छोटी छोटी घास लगी हुई है और आगे चल कर बहुत बड़े पेड़ पोधे लगे हुए हैं सड़क के दुसरे साइड --

यहा पर ये पार्क का नजारा दिखाई देरा है जहा पर निजी जमीन पर बहोत सारी छोटी छोटी घास लगी हुई है हरा भरा और--

बहुत सारे पेड़ पौधे चारों तरफ बड़े बड़े लगे हुए हैं और पास ही सामने व्हाइट कलर की कुर्सी रखी हुई है बै--

खड़े हुए हैं और यहां पर पर्दे में लाल सफेद चेक से बाउंड्री बनी हुई है और कुछ आदमी का जाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

हुई है जहां पर उसकी सर्विसिंग की जा रही है और बड़ी बड़ी कांच की खिड़किया है ।

यहाँ पर जो नजारा दिखाई दे रहा है ये किसी मॉल का नजारा दिखाई दे रहा है जहां पर--

ब्राउन कलर की पेंटिंग है और उस पेंटिंग में व्हाईट कलर से सिनेपोलिश लिखा हुआ है और निचे कुछ आदमी खड़े हुए हैं उसी के ब्लैक कलर का--

यहाँ पर एक किसी साइकीली स्टोर का नजारा दिखाई दे रहा है साइकिल की बड़ी सी दुकान है जहां पर बहोत सारी साइकीले लाइन से खड़ी हुई है।

सामने ही एक नीले कलर की साइकिल खड़ी हुई है और आगे चलकर सफेद काली लाल--

थोड़ा सा जाकर पेट्रोल पम्प के दुब्बे बने हुए हैं और बड़ी सी लाइटिंग लगी हुई हे और पेड़ पोधे लगे हुए हे ।

और बाउंड्री के ऊपर कुछ छोटे छोटे बोर्ड टंगे हुए हैं और आस पास बहोत सारी मोट--

सफेद कलर की ढेर सारी कारे दिख रही है और आगे चलकर और सारी कारे --

यहा पर दिखाई दे रहा है येह कुछ पुराणी अ बिल्डिंग का नजर दिखाई दे रहा है जोकि बाउंड्री दिख रही है पीले कलर की--

यहा पर जो ये नजारा दिखाई दे रहा है किसी रेस्टोरेंट का नजर दिखाई दे रहा है यहा पर बड़ी सी टेबल रखी हुई है पीले कलर की टेबल पर वाइट कलर की प्लेट रखी हुई है और प्लेट पर--

सामने बहोत साड़ी सीडिया दिख हे सीड़ीओ के उप्पर कुछ आदमी खड़े है जिन्होंने नील कलर के कपड़े पहने हुए हैं ।

यहां पर ये जो नजारा दिखाई दे किसी मंदिर का नजारा दिखाई दे रहा है यहां पर बहुत ही बड़ी मंदिर बनी हुई है मंदिर में गोल गोल--

यहाँ पर जो य नजारा दिखा दे रहा ह श्री राम बुक डिपो का नजारा दिखाई दे रहा हे और --

यहा पर ये जो नजारा दिखाई दे रहा है ये किसी बस स्टैंड का नजारा दिखाई देरा है जहा पर बसे खड़ी हुई है सफेद कलर की कुछ--

काला और वाइट लोवर लाल और नीला लोवर टेंगा हुआ है ओरेंज और टीसर्टस सफ़ेद कलर की टंगी हुई है और आगे और सारी टीसर्ट लोवर रखे हुए है बिकने के लिए।

यहाँ पर जो नजारा दिखाई दे रहा है ये सामने एक रथ खड़ा हुआ है रथ मे--

शॉपिंग स्टोर दिख रही है जहां पर सामने बहुत सारी रंगबिरंगी लाल पीली नीली हरी--

यहां पर ये जो दिखाई दे रहा है गोयल आइसक्रीम पार्लर दिखाई दे रहा है यहां पर ऊपर बोर्ड में लिखा हुआ है और--

यहा पर ये जो नजारा दिखाई दे रहा है किसी बहोत बड़े जिम का नजारा दिखाई देरा है यहा पर बहोत सारी मशीनरी सामने रखी हुई है जीम --

तीन औरते साड़ी पहनकर खड़ी हुई हे और बिच में एक आदमी नील कलर का कुर्ता पजामा पहन के खड़ा हुआ हे ।

और पीछे बल्लून से सजावट है पिंक कलर के बैलून और रंग बिरंगी लाइट लगी हुई है और कुछ पर्दे लगे हुए है।

लड़किया सूट पेहने खड़ी बैठी हुई है और कुछ औरते भी बैठी हुई है।

यहा पर ये जो नजारा दिखाई देरा है किसी का नजारा दिखाई देरा है जहा पर एक पादरी खड़ा हुआ है बिच में।

यहा पर ये जो दिखाई दे रहे हे बस्टर बस्तर देरी फोम का नजारा दिखाई दे रहा हे जो की बहोत --

अंदर दिख रहा है और निचे एक आदमी खड़ा हुआ है सयाना सा एक ओरत खड़ी हुई है लाल कलर के कुर्ता पहने हुए।

कुछ छोटे पेड़ पोधे भी लगे हुए है और सामने बहुत सारी चेयर रखी हुई है लोगों के बेठने के लिए और चेयर के पीछे बहुत सारे प-पोधे लगे हुए हैं।

यहा पे जो ये नजारा दिखाई दे रहा है मछली बजार का नजारा दिखाई दे रहा है जहा पर नील कलर की पनी रखी बिछी हुई है पनी में बहोत सारी मछलिया रखी हुई है बिकने के लिए पास एक लड़का--

यहाँ पर जो नजारा दिखाई दे रहा है कुछ पहाड़ी सी जंगल सा दिख रहा है जहां पर एक लड़का खड़ा हुआ है पीछे की तरफ मुंह कर के और उसने --

यहां पर ये जो नजारा दिखाई दे रहा है यहां पर कुछ मकान बन बना रहे हैं कुछ लोग।

ओर यहा पर बहोत सारे पेड़ पोधे और लाइटिंग दिखाई दे रही है यहा पर लोग गुमने के लिए मोज मस्ती करने के लिए आते है।